और ऐसा लग रहा है बहुत ही बर्फीली जगह है यहां पर ठंड बहुत पड़ती होगी और यहां पर मुझे क्रेन और बड़े बड़े ट्रक दिखाई दे रहा है जो बर्फ को भर रही है और यहां पर आसमान बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

मैदान दिखाई दे रहा है और खुले मैदान में कुछ लेडिस बैठी दिखाई दे रही है और यहाँ पर सामने की तरफ मुझे एक मंदिर --

और यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजे टंगी हुए दिखाई दे रही है यहां पर मुझे बिस्किट टंगे हुए दिखाय दे रहे है सोयास्टिक टंगी हुए दिखाई दे रही है शैम्पू टंगे हुए दिखाई दे रहे है फेयर लवली टंगी हुई दिखाय दे रही है पीछे की तरफ मुझे मसाले टंगे हुए दिखाई दे रहे मैगी टंगी हुई दिखाई दे रही है और पनि मे बिस्कुट रखे हुए दिखाय दे रहे है।

यह दूकान हेयर कट्टिंग दिखाई दे रही है उसके बाहर कुछ तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पार्किंग एरिया पार्क करी हुई गाडी दिखाई दे रही है।

यह पर एक स्टेशन दिखाई दे रहा है स्टेशन प से लोग बस और ट्रेन पकड़ते हैं और यह एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पर कुछ कुत्ते बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है आसमान बिलकुल साफ़ सु --

तस्वीर में मुझे एक मेला दिखाई दे रहा है मेले में से बहुत सारे लोग आते जाते दिखाई दे रहे है ये मेला में से लोग बहुत सारे जन दिखाई दे रहे है ये लोग एक --

मुझे एक स्टेशन दिखाई दे रहा है स्टेशन मे बस स्टेशन दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर कुछ लोग बैठे लेटे हुए दिखाइ दे रहे है ये रात का समय हो रहा है।

हम एक योग करते हुए कह सकते है सामने टेबल लगी हुई है जिसमे दो लोग बैठे हुए है सामने मुझे कुछ घर भी दिखाई दे रहे है और यहा कालन जैसा दिख रही है यहां पर पेड़ भी दिख रहे है।

पीछे एक टैंपल दिखाई दे रहा है टैंपल के ऊपर टेक्सचर बहोत ही अच्छा काफी शानदार किया गया है और यह किले के समान दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही एन्सिएंट टाइप का लग रहा है।

यह तस्वीर मे मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है दूकान मुझे बड़ी सारी दिखाई दे रही है और इसका कलर मुझे क्रीम दिखाई दे रहा है ऊपर मुझे हॉल का कलर व्हाईट दिखाई दे रहा है पंखा भी लगा हुआ है।

यहाँ पर लोग क्रिश्चियन प्रैअर करने आते है और उसके बाहर कुछ फुग्गे लगे हुए दिखाइ दे रहे है जो कि मुझे ब्लू व्हाइट कलर के दिखाइ दे रहे है।

और ऊपर कुछ बलून लगे है क्यू की ऑरेंज और ब्लू कलर के है और एक तस्वीर भी लगी हुई दिखाय दे रही है यहाँ पे मुझे हॉल बिलकुल प्लेन दिखाई दे रही हैं और उसके नीचे दो कुर्सी लगी हुई दिखाई दे रही है।